साइड में छोटे छोटे खरपतवार है।

इसमे पानी की पाइप दिखाई दे रही है।

सुरेश रिफ्रेशमेंट का बैनर लगा हुआ है।

जाली लगाई गई है एक बुढा--